छबी में हमें एक बस स्टेशन दिखाया गया है।

बाद में हमें एक दरवाजा और खिड़की नजर आ रहे हैं।

छवि में हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

ये चित्र में हमें बहोत सारे गुलाब फूल दिखाये गये है।

गुलाब फूल के पीछे हमें पीले रंग का फूल का माला दिखाया गया है।

दो बड़े बड़े बैनर्स नजर आ रहे हैं।

रेलवे स्टेशन में हमें एक ट्रेन रुकता हुआ नजर आ रहा है।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

फूल लगाया हुआ नजर आ रहा है।

वहां पर हमें कुछ गाड़ी मोटर्स नजर आ रहे हैं और एक इंसान साइकिल चलाते हुए नजर आ रहा है।

छवि में हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

छवि में हमें एक बड़ा सा जिम दिखाया गया है।

जिम के नीचे का फ्लोर में हमें सफेद रंग से बहोत सारे चीजे बनाया हुआ नजर आ रहा है।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

वहां पे हमें कुछ न्यूज पेपर्स नजर आ रहे हैं।